बहुत सारे छोटे - छोटे नन्हे मुंहे पौधे हैं और फूल पत्तियां और बहुत सारे पत्ते गिरे हुए हैं जंगल में जंगल काफी घना दिख --

यहाँ पे बाल काट रहा है महिला का एक नाई--

झ्व बहार मै कुछ कॉलेज टाइप का है।

जिसमे से राधा कृष्ण भी है राम सीता भी है बजरंग बलि भी है |

एक सलून का फोटो है जो की नया -नया सैलून है और यहाँ नाइ बाल काट रहा है।

और यहाँ जग लगा के गाड़ी को उठा के शोरूम में ठीक करने के लिए ले जा रहा है एक आदमी वहां लगा हुआ गाड़ी बहुत खतरनाक एक्सीडेंट हुआ है आगे का शो --